यह एक ब्यूटी पार्लर का पिक्चर है जहाँ पर बहोत विभिन्न प्रकार का मेकअप किया जाता है।

यहाँ पर खुला आसमान है। आसमान नीले कलर का है। सफ़ेद कलर के बादल हैं। बहुत बड़ी नदी है जिसमे बहुत अच्छा पानी बह रहा हैं।

यहाँ एक पूल है पुल के ऊपर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं एक छोटा पुल है एक बहुत बड़ा पुल है आसपास पेड़ लगे हुए हैं।